यह एक मैदान है जहां पास बच्चे लो--

एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग मे बहोत सारी खिड़कियां है।

जूस रखा हुआ है और नींबू भी लगी हुई है।

यहां अंदर पाइप भी रखे हुए हैं और कुछ--

एक अलमारी रखी हुई है और कार्टून मे कुछ सामान रखा हुआ है।

दो बेलदार काम पे लगे हुए हैं और एक व्यक्ति बात कर रहा है।

जो एक व्यक्ति कार से कुछ मटेरियल निकल रहा है और--

यह एक हॉस्पिटल दिख रहा है जहां पास बहुत सारे लोग दवा के लिए बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं।

ये एक चॉकलेट केक है जो बोहोत ही स्वादिष्ट दिख रहा है।

अच्छा लग रहा है और गाय के गले पे रस्सी बंधी हुई है।

कैमा दिखाया गया है यहां पास एक बड़ा सा रूम बना हुआ है जो बहोत ही लंबा-लंबा है यहां पास कुछ --

यहां पास दो बिल्डिंग बनी हुई है जहां पास एक पिंक कलर पुता हुआ है और वाइट कलर पुता हुआ है जो बहोत ही प्यारा लग रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पास लोग कुछ खा रहे हैं यहां पास अंदर की ओर ड्रेसिंग टेबल और चेयर रखी हुई है।

पेट्रोल पंप में एक रूम बना हुआ है जहां पास कुछ चेयर भी रखी हुई हैं।

अह बल्ब भी लगा हुआ है और एक घड़ी टंगी हुई है और एक पोस्टर में कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं।

और रोहन चाय सेंटर चाय की कॉफी लिखा हुआ है।

यह एक रूम बना हुआ है और यहां डांस क्लास है। यहां डांस सीख रही हैं कुछ बच्चिया--

यह एक चिकन सेंटर है जहां पास अंडे--

और चिकन बेचे जाते है यहां पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपनी दुकान चला रहा है।